चित्र में ये एक बड़ा-सा घर दिखाई दे रहा है घर के अंदर ये दो आदमी दिखाई दे रहा है एक आदमी जा रहा है एक आदमी खड़ा है।

--और टेबल लगे हुए हैं टेबुल के ऊपर मछली रखी हुई है आदमी मुँह में मास्क लगाये रखे है और नीचे फर्श साफ है।

इस चित्र में एक गार्डन है गार्डन के अंदर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं ।

टोकरी लि है टोकरी में पूजा का सामान रखी हुइ हैं।

चित्र में एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर लाइट जल रही है और काउंटर बना हुआ है।

फर्श औ- काउंटर बने काउंटर के ऊपर मछली की दुकान लगी हुई है एक आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी मुह में गम गमछा लगाया हुआ है एक पंखा दिखाई दे रहा है और बहुत से बुके किताबे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लाइटें जल रहे है ऊपर एक पंखा है और कपड़े पहने हुए और फर्श ठी --

मछली रखी हुई है उसके ऊपर एक और पाइप से उसको धो रहे हैं बाल्टी रखे हुए है ऊपर कपड़े रंग-बिरंगे टंगे हैं।

तस्वीर में कुछ बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है साइकिल भी खड़ी है मोटर साइकिल भी खड़ी है।

पीछे साइड में कुछ मकान दिखाई दे रहा है खुला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ औरतें भी हैं।

हम देख रहे है स्टेट बैंक दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत लाइट जल रही है बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

इमे एक मैदान है मैदान के अंदर कुछ बच्चों का खेलने का झूला है झूले के ऊपर बच्चे कुछ बैठे है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है नीचे का साफ है।

ये एक एसबीआई बैंक दिखाई दे रहा है यही बैंक के ऊपर से भी सीढ़ी से आदमी उतर रहे है नीचे बहुत सारे आदमी लाइन लगाकर के खड़े है बहुत सारे मोटर साइकिल खड़ी है।